जिसमें बोहोत सारी मशीना रखी हुई है।

आ रहेजा रहे हैं | एक लड़के ने ब्लू कलर का शर्ट पेहना है ।

ये एक रोड दिख रही है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते-जाते दिख रहे है।

ये एक बहोत ही बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ उग रहे हैं।

एक वाइट कलर की बोरी रखी है और वाइट कलर की बाल्टी लगी हुई है साइड में एक स्टील का ड्रम बना है।

नीचे बहुत सारा कचरा भी दिख रहा है | थोड़ा बहुत पानी भी भरा है | कुछ पेड दिख रहे हैं |

यहाँ पर तीन गाड़ी खड़ी दिख रही है एक ट्रक खड़ा है एक टैंकर खड़ा है और एक कार खड़ी है।

दो बाइक खड़ी है एक एक्टिवा खड़ी हुई है एक आंटी दिख रही है जिन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहन --

सीढ़ी दिख रही है बहुत सारी लाइट जल रही है।

ये एक नाई की दुकान दिख रही है जिसमें कुछ लोग अंदर बैठे है कुछ बाहर खड़े है।

दो लाइट जलती हुई दिख रही है पेन रखे हुए दिख रहे हैं व्हाइट कलर के टाइल्स दिख रही है।

अ ए.सी. दिख रही है | सर दिख रहे हैं जिन्होंने रेड कलर की टी -शर्ट पहनी है | बोहोत सारे परदे दिख रहे हैं |

एक लड़का बैठा है उसने नीले कलर का टॉवल ओढ़ रखा है और एक उसकी दाढ़ी बना रहा है।

बहुत सारी बाइक खड़ी है एक सफ़ेद कलर की एक्टिवा खड़ी है एक ऑटो खड़ी है |